होटल जहां जिसका नाम रॉयल रेजिडेंसी है उसके नीचे कुछ दुकानें भी है।

शटर डाउन है कुछ लोग घूम रहे हैं जो फोन पर बात कर रहे हैं।

दो कुछ और लड़कियां भी हैं पीछे एक बैनर लगा हैं जिसपे सम्मेलन लिखा हुआ हैं।

यह पहाड़ी इलाके का दृश्य है ऊपर से बहुत सारी घना जंगल दिखाई दे रहा है दूर दूर हरे भरे--

और कुछ पौधे ब्राउन रंग के पत्तों के भी है।

सामने एक गेट है गेट के यहां एक आदमी खड़ा है।

यह एक बाजार का दृश्य है जहां सामने की तरफ एक बैंक है।

और यहाँ तबला भी लगा हुआ है एक औरत ने सा --

एक केराना स्टोअर है एक ग्री लोकेशन है।

पीछे एक छोटा सा घर बना हुआ है।

यहाँ कुछ रैंके रखी हुई हैं रैंकों के ऊपर कुछ टब भी रखे हुए हैं।

और यह बाहर लोहे की गेट भी लगे हुएं हैं।

कुछ लोग टोल नाके पर खड़े हुए हैं।

और यह बेंचे भी रखी गई है।

आयना भी है और एक मूर्ति भी लगी हुई है।